दिखाई रही हे मार्किट मे बहोत दिखाई दे रहे हैं बहोत सारी भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं । सामान लेते हुए व्यक्ति नजर आ रहे हैं और बहोत लोग भीड़ भी बहोत दिखाई दे रही है।

मछलियाँ दिखाई दे रही हैं और ये रखी हुई दिख रही है और यहाँ दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक व्यक्ति ने हाथ मे कुछ मोबाइल ले रखा है और एक व्यक्ति खड़ा होकर हुआ कुछ काम कर रहा है।

दो लोग दिखाई दे रहे हैं और एक व्यक्ति और दिखाई दे रहे उसने भी केप लगा रखा है और यहाँ गेट के पास सजावट कुछ दिखाई दे रही है ।

यहा मुझे एक ट्रेक्टर दिख ट्रक दिखाई दे रहा है और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं बहोत लोग दूर दूर इसमे दिखाई दे रहे हैं बहोत से वाहन भी दिखाई दे रहे हैं बहोत दूर दूर तक।

यहाँ पे दो लोग दिखाई दे रहें हैं। बेठे हुए दिख रहें हैं ओर यहाँ पर अलमारी में बहुत सारी बुक दिखाई दे रहीं हैं ओर बहुत सारी दिख रही हैं बुक ।